जो मां दुर्गा का मंदिर है यह काफी बड़ा--

यह फोटो किसी बड़े से बकरियों के रहने की जगह है के आसपास की जगह की है तथा इसमें काफी बकरिया --

एक ब्रिज निकल रहा है जो ब्रिज --

साफ और बहोत विशाल दिख रही है।

काफी सामानस रखे हुए हैं तथा इसमें एक नन्ही बच्ची एक आलेखन के साथ--

यह फोटो किसी बड़े से हॉल का है।

जिसमें एक टीचर काफी बच्चों को--

चल नहीं रहे इसका मतलब यह फोटो --

जिनकी रिक्शा एकदम नए हैं। तथा वह किसी सवारी का इंतजार कर रहे हैं।

तथा बिल्डिंग के सामने कुछ हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

जो काफी सुंदर लग रहे हैं।

यह फोटो किसी मार्केट का हैं जिसमें एक दुकान का फोटो लिया गया हैं।

जिसमें काफी भीड़ भी लगी हुई है।

इस फोटो में मौसम भी काफी साफ दिख रहा है।

यह फोटो काफी सुंदर लग रहा है।

एक सीढ़ी भी दिख रही है ट्रैक्टर अभी जो नया है यह आयशर कंपनी का है ट्रैक्टर का कलर रेड है।

खरीदने के लिए खड़ी हुई हैं जिनके हाथ मे बोतल लगी हुई है।

जिसका फोटो इस लिया गया है यह दोपहर के समय का फोटो है।